इस बिल्डिंग के आगे कुछ गाड़ियां और एक स्कूटी पार्किंग में लगे हैं।

होटल दिख रहा है इस होटल का नाम दी ग्रेट अर्बन ढाबा हैं।

यह मेरी हिसाब से शर्टस की दुकान है।

चवनप्राश आदी बि है और दरवाजे पर फार्मेसी भी लिखा है यह एक केमिस्ट की दुकान है।

बोर्ड पे वेलकम टू शीला--

कुछ दोस्त खेलते हुए दिख रहे है और बड़े बड़े पहाड़ और जंगल दिख रहे है।

यह बहोत ही खूबसूरत लगा है लग रहा है यहां पर बहोत ही--

मुझे लगता है इसमें इमेज में एक बहुत ही खूबसूरत कैफे है।

मुझे इस पिक्चर में कुछ मजदूर--

इस पिक्चर में मुझे एक लाल रंग की बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिस के ऊपर--

इसका वेटर भी बहुत ही बढ़िया है।

यहां बहुत ही खूबसूरत घर है इसके बाहर गमले लगे हैं जिस पे--

जिसकी ओपनिंग सेरिमनी है और जिसमें आगे हनुमान जी का पोस्टर भी लगा है।

दिये जला रहे हैं और कुछ--

इस ए_टी_एम के बाहर दो पुरुष खड़े हैं जिन्होंने सफेद कलर की शर्ट पहनी है।